बहुत अच्छा तरह से सजाया गया है सैलून को।

यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता --

यह एक पहाड़ है पहाड़ के ऊपर बहुत सारे पेड़ हरे-भरे हैं जो देखने में काफी ही सुंदर लग रहा है।

यह एक शूज़ की दुकान है यहाँ पर बाटा कम्पनी के बहुत सारे जूते चप्पल सेंडिल मिलते हैं ।

यहाँ पर बच्चे द्वारा रंगोलियाँ बनाये जा रहें हैं।

यह एक जिम का रूम है यह जिम बहुत ही सुन्दर से बैलून के द्वारा साजाया गया है।

यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक और प्रोफेसर लोग होते हैं।

यह पेट्रोल पंप में बहुत सारे आदमी आकर पेट्रोल डलवातें हैं। यहाँ पर दो वर्कर होते हैं जो गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डलवा डालते हैं।

हर चर्च में क्रिस्चियन लोग आकर प्रेयर करते हैं।